बहोत सारे लोग खड़े हैं नीले लाल हरे गुलाबी कपड़े पहनकर।

तथा ऊपर गदे की आकृति के चार स्तंभ भी लगे हुए हैं।

यह एक सर्विस एंड स्पेयर है जिसका नाम दीप नाम से है।

यह एक जे_सी_बी का सीन है जो कि एक ट्रक पर चढ़ाते हुए दिखाया गया है।

आसपास तीन चार कुर्सी और मेज भी रखी हुई --

यह किसी पुरानी जर्जर इमारत की फोटो है।

इसमें बहुत सारे खंबे सने हुए हैं किसी चीज से--

और नीचे की तरफ काला और ऊपर की तरफ पीला दिख रहा है।

और ऊपर की तरफ एक उल्टा बैनर दिख रहा है जिसमें लड्डू छपे हुए हैं।

यह एक राजकीय कॉलेज की तरह लग रहा है।

जिसके सामने दो आदमी लाल और हरे और एक छोटा सा बछड़ा भी खड़ा हुआ है।

जिसके सामने एक आदमी फोन लिए फोटो खींच रहा है।

और उसमें स्कूटी भी खड़ी हुई है और सामने की तरफ एक कार खड़ी है।

इस क्रेन को देखने से यह लग रहा है कि यह खुद को उठाने का प्रयास कर रहा है।

दूर की तरफ पीले कलर के घर के नीचे दो आदमी खड़े हैं और एक मोटरसाइकिल है।

नीचे डस्टबिन या टब रखा हुआ है।

उसमें बड़ी बड़ी मछलियां और एक आदमी मछली को काटता हुआ दिख रहा है।

और इसमें बहोत सारी मोटरसाइकिले में भी खड़ी है।

इसमें तीन ऑटो और एक काली कार एक सफेद मार्शल और कुछ मोटरसाइकिले भी दिख रही है।

इसमें आस-पास जिम वाले एयर बैग भी टंगे हुए हैं।

यह किसी मार्बल की दुकान का सीन है।

हैं जिसपे अद्वैत गरीकरणी लिखा हुआ है जो कि ए_जी मार्बल ललितपुर लिखा है।